है वकील ने काला कोट --

यह चंडी माता का मंदिर है।

वेह रेड कार्पेट पर नृत्य कर रहा है।

यहां पेट्रोल मिलता है यहां बहुत--

यह एक सफेद गाड़ी है। सफेद गाड़ी खड़ी है।

यहां बहुत सारे फूल हैं।